यहां पे एक पास में जनरल वाला गेट भी लगा हुआ है एक उसके पास चक्कू रखा हुआ है और ये --

यह एक जंगल है यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है मिट्टी लगी हुई है हरियाली हुई है और यहां पे एक --

दीवार उसकी व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है नीचे पॉलिथीन में डाली हुई एक बाल्टी दिख रही है।

यहां सब्जी को पानी की बोतल किसी कॉपी किताबें किसी में चार्जर रखा हुआ है यहां कोई और दिखाई नहीं दे रहा है।

यह लोग मकान बनाने वे में काम दे रहे हैं और यहां पास में घर भी जा रहे हैं इधर गाड़ियां भी पास खड़ी है।

तीनों ने यूनिफार्म पहन रखी है टी-शर्ट पहन रखी है येलो व्हाइट कलर की और एक लड़की है जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे हैं और --

यह एक कछुआ है जो क्रीम कलर की घास पे चल रहा है यहां आस पास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।

मुझे यहां पे बहोत सारी चीज़ें बनाई हुई है यहां पे फ्रिज भी रखा हुआ है जिसके अंदर--

और सब लटका है यहां एक लड़का है जो ये खाना खा रहा है उसका फेस क्लियर दिख रहा ।

यहां माताओं की मूर्तियां रखी हुईं है यहां बहुत अच्छी पूजा चल रही है आरती चल रही है।

लाइट भी लगा रखी है ए_सी भी बहुत सारी लगी हुई है और यहां पे टॉर्च भी जलाई गई है।

यहां पे एक आदमी है जिसने थैला ले रखा है वह व्हाइट कलर के कपड़े पहन के अंदर जाने की रहा है येलो कलर का स्टेशन दिख रहा है।

यह एक सड़क है हाईवे यहां पे बीचों बीच जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है यहां पे पेड़ पौधे लगे हुए है मिट्टी भी लगी हुई है।

यह एक परफ्यूम की शॉप है यहां पे लड़कियों के मेकअप के सामान भी मिलते हैं यहां पे इनके --